इस साईंड भी एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है डबल मंजिल है| सामने बहुत सारी भीड़ लगी हुई है बहुत सारे जेंट्स और बहुत सारी लडिसे हैं| एक लड़का--

दिखाई दे रहा है गेट का सीन है गोल कलर का सीन है बालको गृह घर एयरपोर्ट लिखा हुआ है और इसके सामने गेट बंद है गेट लोहे के लगे हुए है।

इसमें एक पूल लगा हुआ है इसमें गोल चक्र बना हुआ है उसमें आग जलती दिखाई दे रही है बहोत सारी भीड़ इकट्ठी दिख रही है आदमी इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं बिजली के तार और पेड़-पोधे दिखाई दे रहे है सामने अच्छा लग रहा है नजारा।

सामने एक बिल्डिंग का सीन दिखाई दे रहा है बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है| कुछ लोग गोल चक्र बना कर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ चेयर लगी हुई है लाल रंग कि कुर्सी लगी हुई हैं उसपे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

नीचे फर्श दिखाई दे रहा है फर्श पर एक आदमी बैठा हुआ है जूता पहरे हुए हाथों में जूते हुए पहरे हुए एक हाथ ऊपर करे हुए टोपा लगाया --